मोर नजर आ रहा है। मोर अपने फन को फिलहाल जा रहा है। उसके साथ मुझे पीछे की तरफ एक लकड़ी का ढांचा नजर आ रहा है।

मुझे सामने की तरफ व्हाइट कलर का पेपर नत आ रहे हैं पेपर व्हाइट कलर पेपर के ऊपर मुझे कुछ चित्र बने हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे की तरफ कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो दूर और छत की तरफ मुझे देखने में कुछ छोटी छोटी सी लाइट जलती नजर आ रही है बीच की तरफ मुझे एक झूमर की नजर आ रहा है।

ए मुझे एक दुकान नजर आ रही। दुकान के बाहर की तरफ मुझे एक कांच नज़र आ रहा है कांच के अंदर की तरफ मुझे कुछ बोतल नजर आ रही है। नजर आ रही है।

इसके अंदर मुझे कुछ केमिकल नजर आ रहा है पिंक कलर का और ब्लू कलर का इसी के साथ मुझे नीचे की तरफ आ रहें हैं।

काफी सारि फाइल ए नजर आ रही है कुछ पन्नी भी नजर आ रही है जो कि पैक करि हुई नजर आ रही हे फाइल -ए भी मुझे पैक करि हुई नजर आ रही हे कुछ रस्सी से बंधी हुई नजर आ रही हे पीछे की तरह मुझे एक खिड़की नजर आ रही हे कांच की--

जो कि बंद नजर आ रही है ऊपर की तरफ मुझे एक पाइप नजर आ रहा है व्हाइट लड़का उसके ऊपर मुझे ब्लू कलर का पाइप नजर आ रहा है लाईट कालर का--

कांच के पाइप से कुछ चिपका हुआ नजर आ रहा है पीछे की तरफ मुझे एक फ्रिज नजर आता है फ्रिज कितना मुझे मज़ा की बोतल स्प्राइट की बड़ी बोतल से आ रही है साइड की तरफ मुझे कुछ वेफर्स का सामान नजर आ रहा है